एक दरवाजा भी बना हुआ दिख रहा है जिसके बाहर बड़े-बड़े वृक्ष भी लगे हुए दिख रहे है।

साथ में कुछ बड़े-बड़े घने पेड़ भी नजर आ रहे है चित्र में बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है।

छत के सामने बड़े-बड़े घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मैदान नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ बालू का रेत पड़ा हुआ है सामने कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है।

पीछे बड़े बड़े पेड़ और कुछ छोटे पौधे नजर आ रहे है सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।